अगल-बगल में पेड़-पोधे दिख रही है ऊपर आकाश नीला और साफ नज़र आ रहा है।

सामने एक खेत नाजार आ रहा है खेत में दो लोग नजर आ रहे है खेत में हरे हरे घाँस दिख रहे है आगल-बगल में जमीन --

सामने एक किला नजर आ रहा है किला के आस-पास लंबी-लंबी सिडिया नजर आ रही है स्तम्भ बना दिख रहा है।

इलेक्ट्रिसिटी की तार जाती हुई दिख रही है ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

आस-पास में पेड़-पौधे दिख रहे है ऊपर आकाश साफ़ दिख रहा है गेट के बगल से रास्ता जाता हुआ दिख रहा है।